से तीन घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं देखने मे की शायद घर बने हुए हैं बाहर एक गाड़ियां खड़ी हुई है।

कई सारी ट्रेन खड़ी हो गई कई सारी ट्रेन आती-जाती दिखाई लोहे के जो पटरिया बिछी गई है साइड में कैसा टपरी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं।

आज वी कैसे आज वी दिखाई दे रही है नीचे--

व्हाइट कलर से पोता गया हैं जो डिजाइनिंग बनी हुई दिखाई दे रही--

बसेस खड़ी दिखाई दे रही बसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है कई बसें आते जाते दिखाई दे रहे--